यह एक वॉटर फॉल की फोटो है।

यहां पर पानी पीने के लिए चार नल भी लगे हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल की फोटो है।

पिंक कलर की झालर लगी हुई है।

यहां पर खाने की फोटो लगी हुई है।

कुछ लाइट के खंभे भी--

जहां पर कांच का काउंटर --

दो नाव में बहोत सारे लोग आगे जा रहे हैं।

हुई हैं जिन्होंने गॉगल्स लगा रखे हैं।